ये शाम का समय है आसमान मे बादल हो रहे है धूप भी पड़ रही है और ये एक आदमी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है | ये रेलिंग लगा रखी है।